देख सकते है कि ये यहाँ पे मशीन वगेरा रखी है कई सारी बुक्स और बहुत सारा सामान रखा है जो ये द हमको दिखाई दे रहा है।

देखिये दोस्तों यहाँ पे चिकन एवं मछली दूकान है जहाँ ये लोग नॉन वेज लेने आते है चिकन --

काली जी है और देख रहे है काफी अच्छी इनको ये गले में गजरा पहनाए हुए --

देखो दोस्तों हमको ये एक खेत नजर आ रहा है जिस खेत में आप देख रहे है कि यहाँ पर --

देखो दोस्तों हमको ये दि दिख रहा है ये नज़ारा इस पार्क में देखो ये पार्क काफी अच्छा है यहाँ से--

ये हमको यहाँ का मैन गेट दिखा है रायगढ़ में है देख सकते है काफी पुराना है।

और ये देखिये हमको जो घर बि बिल्डिंग दिख रही है इस बिल्डिंग को अभी काम चल--

और देख सकते है की काफी पत्थर रखे हुए है ये नदी में पानी भरा हुआ नदी इतना पत्थर वगैरह डले हुए है ऊपर पूल है।

और ये देखिये जो न हमको नज़ारा दिख रहा है ये नदी में बहुत सारा पानी है बरसात का --